एक कुन दो तीन काउंटर लगे हुए हैं सामने।

एक लड़का बाइक पर बैठा हुआ है।

पर साइड में लड़का बैठा हुआ है।

और इसमें तीन लड़के भी है जो जिम कर रहे है।

काफी सारी लाइट लगी हुई है।

एक इसमें एल्यूमिनियम का गेट है।

सामने एक पीले कलर का पन्ना पड़ा हुआ है।

तीन चार बच्चे हैं दो आदमी है फिर बराबर में एक मेडिकल है।

जूस मशीने है इंडक्शन चूल्हा है।

नीचे गोल लकड़ी का डिजाइन है।

यह सामने दो इमारत है अलग-अलग कलर के।

वो दूसरी साइड में उधर में एक कपड़ा बंधा हुआ है।